खंभे पर एक बैनर भी लगा हुआ है जो की उल्टा नजर आ रहा है सामने कुछ गमले भी रखे हुए नजर आ रहे हैं जिनका रंग लाल रंग का दिखाई दे रहा है।

तथा एक तरफ एक सिलेंडर भी लगा हुआ नजर आ रहा है यहां ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई नजर आ रही है तथा यहां पर एक पंखा भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

तथा कुछ लोग बिल्डिंग के बाहर जमीन पर खड़े हुए नजर आ रहे है जमीन पर कुछ कारपेट भी बिछी हुई नजर आ रही है।

तथा पास में ही बहुत सारी गंदगी भी पड़ी हुई नजर आ रही है सामने की तरफ इसमें ग्रिल भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

तथा इस स्विमिंग पुल में बहोत सारे लोग नहा रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे तथा कुछ आदमी तथा कुछ औरते भी है।

तथा इस दुकान के बाहर की तरफ एक जोड़ी चप्पल पड़ी हुई नजर आ रही हैं तथा इसके अंदर बोहोत सारी अलमीरा भी रखी हुई नजर आ रही हैं।